इस तस्वीर में हमें बहुत सारे फिश एक्वेरियम दिख रहे हैं जिनमें बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं।

इस तस्वीर में हमें एक पो दो पोलिस वाले और एक महिला दिख रही है आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं एक पानी का--

पिक्चर में हमें एक तालाब नदी दिख रही है जहां पर बहुत सारी गाएं नहा रही हैं।

इसके पीछे चेयर के पीछे कुछ सैंमपलस लगे है।

इस तस्वीर में कुछ बच्चे बॉक्सिंग करते हुए दिख रहे हैं।

ये कोई ढाबा भी दिख रहा है जहां पर एक स्कूटी कुछ बाइके भी खड़ी है।

ऊपर बहुत सारे फैन लाइट्स लगी हुई हैं साइड में स्पीकर्स लगे हुएं--

ये व्यक्ति अपनी फोटो सेल्फी ले रहे हैं मिरर के थ्रू --

कुछ दूरी पे एक कमरा भी दिख रहा है बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं बीच में पटरी है।

कुछ होम्योपैथिक है कुछ एलोपैथिक है बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां रखी हुई है।

पर्दे यूज किए गए है। नीचे लाल रंग की मैट बिछाई गई है। आस-पास बिल्डिंग है।